और कुत्ते को लेटाया हुआ है | पास में कुछ इंजेक्शन लगे हुए तरे हुए हैं | उधर कुछ दवाइयाँ धरी हुई हैं | कुछ पानी की बोतल दिख रही हैं ।

आप देख सकते है सामने एक कॉलोनी दिख रही है। कॉलोनी की सड़क पर बल्ब --

और उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक पेड़ की झाड़ दिख रही है।

बोहोत सारी मट्टी दिख रही है और बोहोत नई डिज़ाइन की एक गाड़ी खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक बच्ची खड़ी हुई है। पास में एक डॉग सो रहा है। अ पास में --

कुकी ब्लैक दिख रहा है। उसके पास में एक झरना है। झरने का पानी --

पास में कुछ पेड़ दिख रहे हैं बाइक दिख रही है साइकिल दिख रही है दुकानों पर खी --

आप देख सकते है सामने दो लोग खड़े हुए है और एक बिल्डिंग दिख रही जिसमे कंट्रक्शन का काम --

ट्रक दिख रही हैं ऑटो दिख रहे हैं अनाज की बोरियां रखी हुई हैं सब्जियों की इ बॉक्सेस रखे हुए हैं।